लगे हुए हैं और यहां बहोत ही साफ सफाई है यहां पर एक व्यक्ति जा रहा है।

और यहां पर सामने काफी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और खुला आसमान है।

कवर चढ़ा हुआ है और यहां पर काफी किताबें हैं यह एक--

यहां पर काफ़ी अच्छी लाइट्स है यहां पर साइड पर एक पंखा लगा है यहां पर दीवार पर कई फोटोस लगी हुई है और ये बहुत अच्छा है।

और यहां नीचे रावी सदन लिखा हुआ है यह एक--

और यह देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है इसकी साइड पर कई सामान पड़ा हुआ है और यह एक कई पिलरों पर खड़ा है।

और एक व्यक्ति कार को साफ कर रहा है और एक कार को खोला हुआ है।